बलफ के नीचे एक शटर दिखाई दे रहा है।

घर के पास में हमें दो आदमी काम करते दिखाई दे रहे हैं।

छत की दीवार पर हमे बहोत से बलफ लगे दिखाई दे रहे है।

ये टिन के नीचे हमे एक और पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है।

रैक के अंदर हमे बहोत से सैंडल चप्पल नागरे रखे दिखाई दे रहे है।

घर के पास में हमें एक तखत रखा दिखाई दे रहा है।

कार के बगल में हमें एक और कार दिखाई दे रही है।

सामने बहोत सी रैक दिखाई दे रही हैं।

रैक के अंदर बहुत सा सामान रखा दिखाई दे रहा है।

रैक के बाहर हमें बहुत से बैलून लगे दिखाई दे रहे हैं।

ए_सी के पास में हमें बहुत से बलब लगे दिखाई दे रहे हैं।

पीछे से हमें ट्रेन आती दिखाई दे रहे है।

इनके पास बहोत से खंबे लगे दिखाई दे रहे हैं।

खंभों में बहुत से तार दिखाई दे रहे हैं।

गाड़ियों के पास में हमें बहुत से लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

गेट के पास में हमें बड़ा सा पेड़ लगा दिखाई दे रहा है।

सामने हमें एक औरत जाती दिखाई दे रही है।

औरत के आगे हमें कुछ कार खड़ी दिखाई दे रही हैं।

रिक्शे के अंदर एक आदमी लेटा हुआ दिखाई दे रहा है।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

साइड में बहोत से घर दिखाई दे रहे।

इसके हाथ में हमें पिंक कलर की हैंकी दिखाई दे रही हैं।

मोर के पीछे हमे बहोत से हरे भरे पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।

पाटा के ऊपर कुछ सामान रखा दिखाई दे रहा है।

अंदर हमे बहोत से आदमी दिखाई दे रहे है।

ग्राउंड में हमें ग्रीन कलर की रेलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है। रेलिंग के पीछे बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

घर के गेट का कलर ग्रीन है।

यहां औरत के बगल में एक और पंडित दिखाई दे रहा है।

तंबू के पास एक आदमी कुर्सी पर बैठा दिखाई दे रहा है।

छातों के पीछे बहुत से पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।

पीछे में बहुत से पेड़ दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े और छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

पानी की टंकी दिखाई दे रही है।

सामने वाली कुर्सी के सामने बहोत से पेड़ लगे हुए हैं।

सामने में बादल भी दिखाई दे रहा है।

छत पर हमें बहोत से बलफ लगे दिखाई दे रहे हैं।

सामने हमें मिक्सर रखी दिखाई दे रही है।

फ्रीजर के ऊपर हमें बहोत से बंद रखे दिखाई दे रहे है।

फ्लैग के बगल में हमें पोस्टर लगे दिखाई दे रहे हैं।

ग्राउंड में बहोत से पेड़ लगे नजर आ रहे हैं और पौधे दिखाई दे रहे हैं।